यहाँ पर लगभग सात-आठ लोग बैठे हुए हैं।

एक गार्डन का ये चित्र दिख रहा है वहां लगता है स्कूल का छोटा-सा गार्डन है।

एक हो --